एक पंडाल लगाया गया है जिसका रंग पीला और गुलाबी दिखाई दे रहा है।

टेबल लगा हुआ है जिस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ है नीचे हरे रंग की कारपेट लगी हुई है।

यहां पर लाल सफेद और ब्लू रंग की लाइटें जल रही है सामने की तरफ एक टेबल लगाया गया है।

यह एक रोड का दृश्य दिख रहा है जिसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

जिसका रंग सफेद गुलाबी और लाल दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक टेंपू दिखाई दे रहा है जिसका रंग पीला है।

इसके आसपास बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिसका रंग हरा है।

गेट पर गोल्डन और सिल्वर रंग की डिजाइन बनाई गई है।

और दोनों तरफ सफेद रंग के गेट लगाए गए हैं।

पानी का रंग ब्लू दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान का रंग काला दिखाई दे रहा है और यह रात का समय है।

इस दृश्य में एक काले रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में सामने की तरफ कुछ दुकानें दिखाई दे रही है।